मुझे इस तस्वीर में एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारी मट्टी पड़ी हुई है।

उस पर बहुत सारी बाईकें जा रही है।

उसमें बहोत सारे सफेद रंग के औजार--

बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे--

मुझे इस तस्वीर में एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा--

मुझे इस तस्वीर में एक देवी दिखाई दे रही है।

और यहां लाल रंग का कालीन बिछाया गया है।

है जहाँ पर बहोत सारी पम्पलेटे और पोस्टर लगाए गए हैं।

और यहां एक आदमी भी--

है यहां बहुत बड़ी जगह दिखाई गई--